यहां पे काफी सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनकी कपड़े का कलर अनेक है।

पीछे की ओर टाइल्स भी लगे हुए हैं गमले में फूल लगाए गए हैं।

ऊपर की ओर काफी सारी लाइट लगे हुए हैं।

जहाँ पे लकड़ी के मदद से कबड बनाए गए हैं कबड के अंदर काफी सारे समान रखे हुए हैं।

दीवार में वॉल पुट्टी की गई है दीवाल में पोस्टर भी चिपकाए गए हैं।

इसमें लिखा हुआ पाटली फॉर्म लाल कार्ड ।

यह एक फील्ड का दृश्य बना हुआ है जहाँ पे काफी सारे कार नजर आ रहे हैं।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

यहां पे नीचे के ओर छोटी छोटी घास भी नजर आ रहे हैं यहां पे काफी सारे व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

ऊपर के ओर डंडे से झंडा टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

गार्डन के अंदर छोटी छोटी घास भी नजर आ रहे हैं।

उनके कपड़े के कलर अनेक हैं नीचे की ओर एक चेयर भी नजर आ रही है।

उपर की ओर एक पोस्टर लगे हुए हैं।

अंदर की ओर काफी सारे सीमेंट का बोरा रखा हुआ है साइड में एक बड़ा सा टेबल रखी हुई जो लकड़ी की मदद से बनी हुई है।

नीचे की और एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनके कपड़े का कलर रेड एवं ब्लू है।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

पीछे की ओर पक्की की गई है बगल में थरमस रखा हुआ है जिसकी कलर ऑरेंज है।

ऊपर की ओर से झालर लटकते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक पहाड़ का दृश्य बना हुआ है जहां पे काफी सारे बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं।

इसके अंदर एक बेसिन भी नजर आ रही है।

नीचे की ओर टाइल्स लगे हुए हैं बाहर के गेट में शीशे की मदद से बनी हुई है।

नीचे की और एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनके कपड़े का कलर ब्लू है।

यहां पे एक बड़ा सा डस्टबिन नजर आ रहा है जिसकी कलर ग्रीन है।

बाहर के और लोहे की मदद से रेलिंग लगाई गई है।

यह एक कार शोरूम का दृश्य बना हुआ है जहां पे चार कार नजर आ रहे हैं।

इनके कपड़े कलर अनेक है नीचे के ओर पक्की की गई है साइड में बोड़े में चावल रखे हुए हैं।

बाहर के दीवार में कुछ पोस्टर चिपकाए गए हैं।

जहां पे दो ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं जिनकी कलर रेड है।

यह एक फील्ड का दृश्य बना हुआ है जहां पे दो ट्रक नजर आ रहे हैं।

फूल का राउंडिंग किये गए है ईंटो की मदद से।

साइड में एक बड़ा सा खंभा नजर आ रहा है।

यहां पे बड़ा बड़ा ट्रे भी रखा हुआ है जिसकी कलर ब्लू है।

यह एक घर का दृश्य बना हुआ है।

सीढ़ी ऊपर जाने की और वो भी पत्थर के बने हुए हैं।

साइड में काफी सारे गाड़ी नजर आ रहे हैं यहां पे एक लोहा का खंबा भी नजर आ रहा है।

सर्फ एक्सेल भी टंगा हुआ है यहां पर हिमगंगे तेल भी टंगी हुई है।